एक दुकान दिख रही है पिंक कलर की जिसकी बोर्ड के ऊपर ब्लू कलर से लिखा हुआ है और पिंक कलर से लिखा हुआ है सा --